रोड के किनारे पर कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ है। और कुछ लोग सामान खरीदते हुए--

जहां पर कई सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और कुछ लोग विश्वविद्यालय के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

कुर्सियां और टेबले लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

कैंटीन में कुछ टेबिले और कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियों पर--

ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है रेस्टोरेंट के अंदर एक टी_वी लगी है।

सामान वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर कई सारी आइसक्रीम वगैरह मिल रही हैं।

यहां पर कई सारे लोग सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

कुछ व्यक्ति पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

रूम के अंदर दो बेड बिछे हुए हैं।

नर्सरी के अंदर कई सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यह एक योगा क्लासेस है जहां पर कई सारीयोगा--

इस पिक्चर मे एक जिम बना हुआ है।

जोकि एक बड़े से मैदान के अंदर --

इस पिक्चर में एक मस्जिद बनी हुई है।

सामने की तरफ एक घड़ी लगी है।

ये एक आकांक्षा हॉस्पिटल का--

इस पिक्चर में एक बड़ा सा मैदान है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा--

जिन पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स --

लड़के के हाथ में एक पाइप है।

ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

कैंटीन अंदर चाय समोसे--

पास में एक बड़ी सी दुकान भी बनी हुई है।